और यहाँ पर पिलर ढलाई का काम चल रहा है। पीछे बोहत सारे पेड़ और पौधे नज़र आ रहे हैं।

और कुछ वेट मशीन दिखाई दे रही है जिस पे मछली को वेट कर के मछली बेचा जाता है।

और सभी घरों पर भी लोग बाहर की तरफ़ और छतों पर जा करके इस भीड़ का म भीड़ को देखते हुए नज़र आ रहे हैं।

एक जगह पर बहुत सारा पानी जमा हुआ है और कुछ यहाँ पर घर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ --

ये एक वर्क शॉप की फोटो है जिसका नाम राजधानी मोटर्स के नाम से रखा गया है।

यहाँ पर सभी तरह के टू व्हीलर बाइक की रिपेयरिंग की जाती है।

कुछ यहां पर स्टैचू हम्म रखे गए हैं।

यह एक हाईवे का फोटो दिखाई देता है और यहाँ पर बोहत सारे ऑटो दिखाई दी रे हैं और एक बाइक दिखाई दी रही है।